चार तल्ला मकान है और इसके बगल में एक स्वराज सा कुछ लिखा है और ये --

यह बहुत हरा-भरा है इसके किनारे चारो बगल पेड़-पौधा ही पेड़-पौधे लगे --

दृश्य में हमें यह दिखाई देता है की यहाँ पे एक मातारानी या भगवान का मूर्ति है।